कई सीसे लगे हैं जो कि सीसे का कलर है व्हाइट एंड हल्का आसमानी--

और भी कई प्रकार के पेड़ है जैसे नीम का और खजूर का लेकिन इनके पेड़ का कलर है हल्का ग्रीन ।

ये कई सारे लेडिस एंड जेंट्स बैठे हुए।

और भी कई प्रकार के यहां पे कलर हैं और एक बोर्ड भी है जोकि लोहा से बनाया हुआ है उसके ऊपर टंगा है जोकि रेड कलर एंड ग्रीन कलर का है।

यहां पे बहते हुए नजर आ रहे हैं जो की पुल है जो की ब्लैक कलर है और ब्राउन --

कई प्रकार के यहां पे सब्जी रखे हैं जे कि साग है लाल कलर का एक--

जो कि ग्रीन कलर एंड व्हाइट और ब्राउन कलर का है और उसी का बगल में एक बाटा शोरूम का चप्पल है जो की वहां पे चप्पल पाए जाते हैं जो की बाटा लिखा।

मशीन का कलर ब्लैक एंड ब्लू एंड व्हाइट एंड तार भी है जो की लाइन से कनेक्शन रहता है जो की ब्लैक कलर का है।

के यहां पे बहुत सारे चेयर्स एंड टेबल रखें जो कि चेयर्स से कलर है हल्का ग्रे ।

ऊपर के साइड लाइट जल रहा है जो कि व्हाइट एंड रेड कलर का कवर किया गया है।

अंदर की साइड भी कप टी रखे जो कि कप टी का कलर व्हाइट हल्का रेड ।

इंटर मशीन का कलर व्हाइट एंड ब्लैक और यहां पे कई सारे मशीन रखे हुए हैं जो कि कई तरह के काम करते हैं।

जो कि इसका कलर है रेड एंड येलो एंड हल्का ऑरेंज ।